स्कूटी दिखाई दे रही है वहाँ मेरे को सामान दिखाई दे रही है और वहाँ मेरे को रोड दिखाई दे रही है लाइट लगी है अंधेरे का मौसम है।

वहां दोनों का असली और पेड़ पौधे दिखाई दे रहे गाड़ी दिखाई दे रही है।

थारा बात हैं यहाँ लोग खा रहें हैं भीड़ लगी है खूब --

वहां अलमारी रखी है शीशे लगे टाइल्स लगी है नीचे।

बाहर बहोत सारे मेरे को दिखाई दे रही है।

लाइटे लगी है खूब सारी और अंधेरे का मौसम है।

और मौसम सवेरे का है और अच्छा मौसम है पेड़-पौधे दिखाई दे रा है मेरे को और घास भूस सबकुछ रखा दिखाई दे रहा है।

जिसमें दिखाई दे रही है वही एक कार खड़ी दिखाई दे रही है एक बाइक खड़ी दिखाई दे--

हमें एक पेड़ दिखाई दे रहा है खम्मा दिखाई दे डोरी दिखाई दे रही है--

कंगन दिखाई दे रहा है और बहोत चीजे रखी दिखाई दिखाई दे रही है में--

चारों ओर दुकान बनाई गई हैं और यहां पर बहोत से लोग कैमरे लेके खड़े हुए हैं।

बहुत सारी फोटो हरी भरी घास फूस है ये दिखाई दे